वो दिखाई दे रहा हैआस-पास मुझे घांस दिखाई दे रही है।

आस-पास मुझे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है और कुछ ग्रीन सी घास से है वो मुझे दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे बड़ा सा घर जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पेट्रोल पंप की मशीने --

इस इमेज में मुझे एक बड़ी सी जगह दिखाई दे रही है। एक रोड सा दिखाई दे रहा है कुछ हरी-हरी घांस दिखाई दे रही है। एक बोर्ड लगा है पीले कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है उसके आजू बाजू कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और ये नाइट का समय है।

इस इमेज में मुझे इस इमेज में मुझे आ बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है और उसके आसपास मुझे पेड़-पौधे दिखाई दे रहें हैं।

इसका ये कमरा है कमरे में कुछ मशीने रखे हुए हैं जो कि जिम करने की मशीन है और ये मुझे एक जिम लग रहा है यहां पर कुछ खिड़कियां है वो मुझे खिड़कियां दिखाई दे रही है।